इसमें लिखे हुए है पंजाब नेशनल बैंक और यहाँ पे कुछ रंग बिरंगे बिल्डिंग भी हैं।

कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। ऊपर की कलर यहाँ पर सफेद रंग की है और नीचे की पिलर ऑरेंज कलर की है।

और यहाँ पर आस-पास में भी बहोत सारे पेड़-पौधे हैं। कोई आदमी भी नहीं है।

ये एक चित्र नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है ये कोई रेस्टॉरेंट है। यहाँ पर बड़े अक्षर में लिखा भी हुआ है केरला होटल ।

हम मेरे सामने एक पिक्चर नजर आ रही है। ये मानो ऐसा लग रहा है ये कोई बोहोत बड़ी बिल्डिंग है जो कि तीन मंजिले की हैं।

और नीचे में भी अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसे और दो बाइकें भी हैं।

कुछ के कलर ब्लू हैं। कुछ काले रंग की भी हैं। आस-पास में बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे एक आदमी भी नजर आ रहा --

यहाँ एक चित्र नज़र आ रही है जोकि एक शॉप की है। लेकिन शॉप की --

यहाँ एक चित्र नज़र आ रही है जो कि हाईवे की है। यहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ रोड पर चल रही हैं।

और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एक गाड़ी की कलर सफ़ेद रंग की है और एक दूर में है जिसकी कलर काले रंग की है।